हवा में उड़ते हुए कबूतर या ईगल दिख रहे हैं।

प्लेटफार्म पर कुछ लोग चल रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां अलग अलग वर्कस्टेशन बने हैं जिसमें हर एक पर्सन अपनी अपनी जगह पर--

हर डेस्क के साथ आरामदायक कुर्सियां लगी है जो लंबे समय तक काम करने के लिए ठीक है।

यहां पर साइड में एक्वा पार्क नामक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक सुस्वागतम का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और ऊपर सीलिंग टीन से बनी हुई लग रही है।

दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक यहां एक गाड़ी पर हेलमेट लगा हुआ है।

ये सीन ओपन एरिया या रोड साइड गैरेज का भी है।

ये एक स्टडी रूम या लाइब्रेरी जैसा लग रहा है।

यहां वुडन पार्टीशन के साथ अलग अलग स्टडी डास्क बने हुए हैं।

यहां पर एक बड़ी सी बस दिख रही है जिस पर बहोत सारे फूल लगे हुए हैं।

जहां पर बैकग्राउंड में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक लोहे का डस्टबिन है और एक ग्रीन कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

ये एक इनडोर हाल या बैंक्विट हॉल लग रहा है।

वॉल्स पर और डेकोरेटिव पैनल्स लगे हैं।

पीछे एक छोटा डस्टबिन दिख रहा है और कुछ चप्पलें भी दिख रही हैं।

इस इमेज में एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसमें फ्यूल फिलिंग स्टेशन लगे हैं।

यह एक कार सर्विस सेंटर या वर्कशॉप लग रही है जहां एक कार को सर्विसिंग या--

ये किसी पुराने महल का साइड का सीन लग रहा है।

इसके अंदर साफ और सफेद कलर की टाइल्स भी लगी हैं।

ये फोटो एक रिसेप्शन या वेटिंग एरिया की दिख रही है जो किसी हॉस्पिटल या मेडिकल --

वुडन काउंटेंट दिख रहा है यहां स्टाफ लोग बैठे या काम कर रहे हैं।

और हॉल में ग्रीन और येलो बलून से डेकोरेशन की गई है।

साइड में रेड और गोल्डन कर्टेन्स भी लगे हैं।

पीछे एक क्रूसिफ़िक्स और रिलिजन पेंटिंग दिख रही है।

यहां के बीच के रोड में पानी भरा हुआ है और बहोत गंदगी है।

ये किसी धर्म के त्यौहार का जुलूस लग रहा है।

हरी चटनी है और उस पर केले का पत्ता है शायद।

और उसके साइड में चेयर्स लगी हुई जो की येलो और ब्लू कलर से है।

और इसके पास एक बोर्ड लगा हुआ है सर्विस ऑफर्ड का।

मंदिर के सामने की दीवारों पर कुछ डिजाइन बनी हुई हैं।

ये एक मस्जिद लग रही है यहां लोग नमाज पढ़ने और इबादत करने आते हैं।

काउंटर पर बॉक्स रखे हैं जो शायद गिफ्टिंग या टेकवे के लिए यूज होते हैं।

और यहां पर एक ऑफिस टाइप का कुछ बना हुआ है जिस पर रेड कलर की बा बॉडर्रिंग की गई है।

इसमें गाड़ियों के पार्किंग के लिए चेक इन की जाती है।

और यहां पर एक सरस्वती माता की मूर्ति भी लगी हुई है।

ये एक बिस्किट की फैक्ट्री लग रही है।

यहां पर कुछ नीले कलर का रखा हुआ है जिससे बिस्किट शायद ढके हुए हैं।

और दो आदमी भी छपे हैं पोस्टर्स में।

जिसमे जिसमें गमले काले और गोल्डन कलर के गमले टंगे हु --

और इसके आस पास के खंभे क्रीम कलर से पेंट हैं।

और इसके साइड साइड में लोहे का कुछ बना हुआ है।

और साइड में टेबल पड़ी हुई है। इसपे वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

और खंभे के ऊपर लाइट्स वाला काम हो रखा है।